पीछे एक ब्लू कलर का ब्लू कलर का क्या बोलते?

हरे कलर का मार्क्स पहना है दुसरे डॉक्टर ने कुछ नहीं पहना है एक डॉक एक डॉक्टर ने --

नीले कलर का सोफा है ब्राउन कलर का सोफा है और कुछ बैठने बैठने के लिए--

इसके जो ऊपर में उसके नीचे भी कुछ गाड़ियां दिखाई दे पड़ रही है जिसके ऊपर जो गाड़ियों ऊपर में पिकअप है उसके ऊपर एक छत है जिसे जो व्हाइट कलर की--

यहां पर एक तालाब का सीन दिखाया जा रहा है जिससे--

और बग उसके सामने एक डस्टबिन भी है जहां पर कच कचरे रखने के--

यहां पे दो लोग ए_टी_एम के बाहर खड़े हैं एक लोग अंदर एक आदमी अपना पैसा ए_टी_एम के अंदर से निकाल रहा होगा वो--

वो आदमी व्हाई दोनों आदमी व्हाइट कलर के टी शर्ट एंड शर्ट पहने हुए हैं एक पजामा पहने हुए हैं एक जींस पहने हुए ए_टी_एम के आगे एक स्टीकर लगा हुआ है जिसे जिसपे कुछ लिखा हुआ है।

पीछे बड़े बड़े उसके ऊपर बहो बड़े बड़े बादल हैं।

ये शायद एक हॉस्पिटल के अंदर कोई काउंटर का सीन दिखाया जा रहा है जिसके पीछे एक डॉक्टर दिखाई पड़ रही है और दो स्टॉफ बैठे हुए अपने काम कर रहे हैं।

इसके सामने एक टेबल है जिसको पर कुछ सामग्री रखी हुई जैसे ये कोई कॉपी भी हो सकती है कोई किताब भी हो सकती है और काउंटर के ऊपर दो लोग जो बैठे हुए सामने एक कंप्यूटर दिखाई दे रहा है।